इसमे बाल्टियां दिख रही है| पानी की टंकी दिख रही है| घास दिख रही है ।

दिख रही है। आदमी दिख रहें हैं। लाइटें जल रहीं हैं।